जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है श्री गणेश पुस्तकालय यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पर काफी किताबे है।

यह एक ऐतिहासिक जगह है जो की बहुत --

हम देख रहे है यहाँ लाल कलर का बड़ा सा बोर्ड लगा है जिसमे सफ़ेद कलर से लिखा है लक्ष्मी बुक डेपो ।

जैसे की आप देख सकते है यहाँ काफी किताबे है अलग अलग तरीकेकी अलग अलग कलर्स की एक किताब है जिसपे लिखा है।

और अंदर गोल्डन कलर की लाइटिंग्स है जिसके अंदर छोटे छोटे झंडे भी है इंडिया के।

ये बूक सेंटर का नाम दिया है गणेश बुक्स अँड स्टेशनअरी जिसके बाजू की शॉप मे कुछ कपड़े लटक रहे ह।